यहाँ पे एल्वेस्टर का बना हुआ सज्जा लगा है और यहां पे लोग भी हैं।

सफेद रंग में टाइल्स लगा हुआ है।

डेकोरेशन किए हैं यहाँ ऑरेंज कलर का पर्दा लगा हुआ है।

मछली का दुकान है यहाँ पे हर किस्म की मछलियाँ उपलब्ध है। .